और सामने दरवाजा भी रंग बिरंगा है।

बहोत ही साफ सफाई से फिनिशिंग किया गया है और--

चित्र में हवाई जहाज का एक चित्र दिख रहा है और हवाई जहाज--

बाबा रोड लाइंस की पुरैनी कटनी--

चित्र में एक बहुत ही बढ़िया देसी गाय--

मुझे इस चित्र में एक ऐसा आम गली दिखाई दे रही है आम गली के --

अंदर प्रवेश कर रहे हैं जिनको टोकन लेना पड़ रहा है और--

सजाए गए हैं और डाइनिंग टेबल भी अच्छी-अच्छी लगी है।

मुझे इस चित्र में एक लकड़ी का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें--